मुझे सामने मेक लाइफ अराइव दिखाई दे रहा है यहां पे शायद गाड़ी वगैरा सेल की जाती है।

ये भी शायद एक दुकान ही है और ये जो है और यहां पे अल्ट्राटेक वाला यहां पे काफी ज्यादा सामान रखा हुआ--

अह काफी ज्यादा अच्छा डेकोरेशन यहां पे किया गया है पीछे घास वगैरा से डेकोरेशन किया गया है और आगे में --

मुझे सामने एक पेड़ दिखाई दे रहा है और ये पेड़ पे फल लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। यहां पे--